महिंद्रा लाल रंग का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और इसके पीछे एक ट्रॉली भी है जिस ट्रॉली के अंदर इनको महाराज को बिठाया गया है।

एक भूरे रंग की टेबल लगाई गई हैं और पास में मेहरून कलर की बैठने के लिए --

यह तस्वीर किसी एक दुकान की या फिर मेडिकल की है जिसमें एक लाल कलर या सफेद रंग का पर्दा भी लगाया गया है और एक --

गुलाबी रंग की स्टूल टेबल भी रखी गयी है जो की काउंटर है इसके पीछे एक काले रंग की कुर्सी भी रखी गयी हैं।

इस बेडरूम पर अलमारियां भी बनी हुई है जोकि भूरे एवं सफेद रंग की दिख --

यह तस्वीर एक फोटो स्टूडियो की हैं।

नोटिस बोर्ड एवं पढ़ाने के लिए भी बोर्ड रखे गए हैं।

जो कि सफेद रंग के कागज पर लिख रहा है उसके नीचे एक तख्ती भी दी हुई है इसके आगे एक भूरे रंग की टेबल पड़ी हैं जो कि --

डाल में ब्यूटी पार्लर है यहां पर जेंट्स कटिंग सेविंग मसाज ड्रेसिंग व फेशियल इलेक्ट्रानिक मशीनों से किया जाता है।

और आगे की तरफ इंजन लगा हुआ है और पीछे की तरफ--

इस तस्वीर में बहुत सारी दुकानों का फोटो दिखाया गया है जहां पर सीमेंट से और पट्टियों से --

इसमें ताज चाय रखी गई हैं और लाल रंग में और हरे रंग में डब्बो में भी चाय हैं।